ओर पौधें लगे हुए है सब तरफ --

बड़ा सा झरना दिख रहा है पहाड़ी पे ही एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है व्हाइट शर्ट मे--

जंगल है ये और बड़े-बड़े से पेड़ दिख रहे है जंगल में--

ये रोड के उस साइड मे स्टेट बैंक का ए. टी. एम. दिखाई दे रहा है।

ये नदी दिख रही है बड़ी सी नदी दिखाई दे रही है किनारे पर एक बोट खड़ी हुई हैं नांव --

आस पास भी ये पेड़ लगे हुए दिख रहे है डैम सा दिख रहा है।

ये खेत में एक व्यक्ति दवाई डालते हुए दिख रहा है डब्बे मे कुछ लिक्विड सा पानी सा भरा हुआ है।

एक दीवार येलो एक पर्पल कलर से प्रिन्ट की हुई दिख रही है लाईटे लगी हुई है।

ये गेट दिख रहा है निचे लोहे का गेट ली खुला हुआ है ऊपर गेट पर अनपूर्णा पिलर्स दिखाई दे रहा है।

पेड़ लगे हुए है बड़े बड़े और पहाड़ी दिख रही है दूरी पर ही दूरी पर बहोत अच्छी --

बिल्डिंग है उसको सजाया गया है इन झंडो से छोटे - छोटे झंडे तिरंगे लगाए हुए है ये --